ये दुर्गा माता माँ भवानी की प्रतिमा है जो बहुत सुन्दर है और इसे देखने के लिए आदमी आये है।

ये स्कूल है और स्कूल के प्रागण में ये डांस प्रोग्राम हो रहा है और ये बहुत सारा आदमी बहुत है है पेड़-पौधे बहुत सारे है।